गिर गई और यहाँ पे अलग - अलग डिज़ाइनें भी बनी हुई दिखा दे रही है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ पे एक सड़क निकली हुई दिखाई दे रही है जिसमें जीने लगे --

रेलगाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है कुछ गमले के पेड़ लगे दिखाई दे रहे है कुछ खुर्सियां रखी दिखाई दे रहे है यहां पर कुछ खिडकिया लगी हुई दिखाई दे रही है।